इस तस्वीर में मुझे एक रोड दिखाई दे रही--

मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।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

यहां मुझे कुछ स्कूटर दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक काउंटर दिखा--

इस तस्वीर में मुझे कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।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

इस तसवीर में मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे कुछ पेड़ दिखाइ दे रहे--

यहां मुझे कुछ लोग दिखाई--

इस तस्वीर में मुझे एक नदी--

आ मुझे कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं।